इसमें ब्लू पेन ब्लैक पेन कई रंग के पेन-पेंसिल रबड़ --

जिसमें कुछ गिट्टी रेत और कुछ--

एक व्यक्ति बैग टांगे हुए दिखाई दे रहा है जो की तजनो को नाप रहा है।

सामने एक सुखा सा पेड़ है।

और इ दीवाल में वाइट कलर की है कुछ खिड़-खिड़कियों में पर्दे लगे हुए हैं।

और उचके चारों और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बौंडरी भी खींची--

और कुछ टेबल्स भी रखी हुई है कुछ कुर्सियाँ भी रखी--

और रेगुलर यूज़ करने वाले --

बिरंग के प्रकार के लगे हुए--

उम्म ब-ब्राउन कलर की टी-शर्ट में है।

सामने कुछ पॉपूलर्स दुकाने है।

--टेबल है कुर्सी है कुर्सी ब्लैक कलर की है टेबल व्हाइट और ग्रीन कलर की है।

सामने की ओर पीजी कॉलेज --

केंद्र है जो की टी.वी.एस. का है और अनेको गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है।

सामने बोहोत सारी गाड़िया दिखाई दे रही है कुछ साइकील भी दिखाई दे रही है सीढ़िया--

सामने छील के प-पौधे--

सामने अ काउंटर सा दिखाई दे रहा है सामने काँच से बनी हुईं खिड़किया दिखाई दे रही है सामने टेबल भी लगी हुई है।